यहां पे स्कैनर भी रख हुआ है ऑनलाइन पेमेट के लिए।

बिल्डिंग्स दिख रहा है यहां पे बिछाने के लिए कार्पेट भी दिख रहा है कुछ कार्पेट बिछा हुआ और कुछ कार्पेट रखा हुआ।